रात फोटो में हमें एक लैब का फोटो दिया गया हैं जिसमें कई जार रखे हैं जिसमें कई द्रव्य भरें हुए हैं।

टेबल पर और भी अन्य सामान रखे हुए हैं कुछ कुर्सियां सफेद कलर की नीचे रखी हुई है।

यह कटनी का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल की फोटो है चांडक हॉस्पियल जो कि चांडक चौक पर बना हुआ है।

फूलों के उसे पूरा सजाया गया है।

जिसमे कई तरह के फल जैसे की केला सेब--

इस फोटो में हम देख सकते हैं यह एक मछली की दुकान लगी हुई है।

फोटो है जिसमें सामने की तरफ स्टेज लगाया गया हैं।

देख सकते हैं यह किसी बड़े से दुकान की--

ऑल लेदर शॉप रखा गया है। यह चप्पल एवं जूते की दुकान है।